स्कूल बैग्स और बहोत सारा समान लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक जामुनी कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

एक दुकान खुली हुई नजर आ रही है।

दरियाओं के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ नजर आ रहा है।

लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक जाम हो।

इस फोटो में हमें एक पार्क दिखाई दे रहा हैं।

बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक केनरा बैंक दिखाई दे रहा है।